सामने स्टेशनरी मोबाइल रिचार्ज डिश रिचार्ज कलर फोटो ।

ए_टी_एम बैंक के अंदर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

नीचे कुछ पैकेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर काफी सारे बुक्स व सामान भी रखा है।

इस एंटरप्राइजेज पे काफी सारे--